इस तरह भी एक पुल बना हुआ जिनमें सीढ़ियां सी लगी हुई--

उधर साइड में दो खड़े हुए है और इसमें लाल कलर की मशीनें है और नीचे मिट्टी बिछी हुई है।